एल_ई_डी बहुत सी चीजें यहां पे मिल जाएंगी जैसे आपको चाहिए और बहुत से लोग हैं यहां पे खरीद रहे हैं।

ये बहोत ही पुरानी बिल्डिंग्स है जहां पे बहोत खंडहर जैसा दिख रही है बाहर में ए_सी भी लगी है दो कार खड़ी हुई है एक व्हाइट एक ग्रे ।

ये बहोत अच्छे यहां पे डिजाइन दिख रहा है खाने की टेबल लगी हुई है बहोत अलग अलग किस्म की वैरायटी दिख रही है लाइटिंग भी रखी हुई है पर्दे हैं।